इसमें से एक कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी--

यह चित्र एक ग्राउंड का है जिसमें कई सारे लोग ब्लू कलर की--

बहोत सारे नारियल के और बहोत सारे पेड़ लगे हुए है और उसमें दो दो तंबू लगे हुए है।

बहुत सारे फूल के पे वृक्ष लगे हुए हैं गमलों के अंदर अलग अलग रंग के गमले हैं।

यह चित्र एक फोटो ग्राफिक स्टूडियो का है जिसमें सामने के साइड एक आदमी लैपटॉप पर कुछ कर रहा है और--

यह चित्र एक पार्क का है यहां पे--

छतरी में क्षत्रिया लगी हुई है जहां पे एक्टिव पे दो आदमी खड़े हुए हैं।

गुजरात का है और उसके पीछे की वहां--

साइड पूरा पानी पानी के अंदर दो नाव दिखाई दी गई है और उनकी--

वहां पे पेड़ भी दिखाई दिए गए हैं टापू की तरह--

एक ब्लैक कलर का बड़ा सा स्पीकर है और योगा के लिए चटाइया भी दि बिछाई दिखाई दी गई है।

है जिसमें से एक आदमी ने गमछा लगाया हुआ है और वो फोन पर किसी से बात कर रहा है।

बिल्डिंग का काम काज चल रहा है और--

एक मंडप सजाया हुआ है और बहोत सारे वृक्ष लगे हैं पीछे।

और एक खू साइड खुर्सीयाँ और एक साइड छोफा लगाया हुआ है और पीछे की और एक टेबल फैन दिखाई दे रहा है वहां पर--

कुछ आदमी को कुछ दे रहा है और एक तिरंगा भी लगाया हुआ है।

जो गेंद का इंतजार कर रही है और बीच में दो तीन--